पास में कुछ लोहे के पोल दिखाई दे रहे हैं एक पोल पे लाइट दिखाई दे रही है।

उधर किया हुआ है पास में कुछ --

टेनो की बनी छत दिखाई दे रही है और ईंटों का बना घर दिखाई दे रहा है।

कोई पेंटिंग बना रही है पास में कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है एक टेबल दिखाई दे रही है जिसपे कुछ रंग --